यहाँ पर देखिये आपको रेड कलर की चेयर दिखाई पड़ रही है टेबल दिखाई पड़ रही है और देखिये कुछ फ्रंट में आपको काउंटर के पास कुछ ग्लास कुछ मग्गा दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे देखिये बहुत सारे बैलून लगे हुए है फूलो की मालाये लगी हुई है।

यहाँ पर देखिये आप को टेबल दिखाई पड़ रही है कुछ चेयरस है देखिये टेबल के ऊपर एक ग्रीन कलर बोतल देखिये टेबल के ऊपर प्लेट है और मेनू रखा हुआ हैं कुछ शॉट्स रखे है टिश्यू रखे है यहाँ पे दीवाल में बहोत सारे पेंटिंग --